यह एक खेत की तस्वीर है। प्रतीत होता है की यह एक चाय का बागान है जिसमें चाय की पौधें लगे हुए हैं और कई सारे पेड़ भी हैं।

यह एक रात की ली हुई तस्वीर है इजी शॉपिंग सेंटर जिसके मालिक आकाश नगर गाजीपुर से हैं।

और किसी चीज की प्रतिमा बनाकर दर्शकों को दिखा रहे हैं और दर्शक इनका तस्वीर ले रहे हैं।

जिसमे कई सारे लोग अंदर जा रहे है और एक व्यक्ति का आधा शारीर दिख रहा है।

इस फोटो में कई सारे लोग खाना बना रहें हैं किसी शादी या फंशन के लिए जिसमे सिंघल टेंट हाउस की एक पानी की टेंकर भी खड़ी है।

यह फोटो छत्तीसगढ़ की एक किसी जगह का है जहाँ आदिवासियों के रीति-रीवाज के हिसाब से वह जो नृ नृत्य करते हैं।

कुछ लोग खड़े है। एक पुजारी है और झंडे लगे हुए है और कुछ पेड़ भी नज़र आ रहे है।

यह भी एक पोस्ट ऑफिस है जहां पर कई सारे लोग खड़े हैं। कई लोग जा रहे हैं और कुछ लोग वापस आ रहे हैं। यहां एक पोस्ट ऑफिस का एक बोर्ड लगा हुआ है।